शादियों मे और अनेक परकार के चीजों मे यूज करते है और ये गेंदा फूल--

एक मास्क पहने है इंजीनियर और दो ग्लप्स और एक हेलमेट पेहने हुए है।

देने के लिए सुई का इस्तेमाल करते है।